यह एक जंगल है जंगल में बहुत सारी बड़ी हरी पेड़ लगी हुई हैं।

चारों तरफ एक दीवार बनी हुई इसके ऊपर एक लाइट लगी हुई हैं।

ऊपर टोकरी रखी हुई है। टोकरी में बोतल रखी हुई है डेलिया रखी हुई है गन्ने रखे हुये हैं।

नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। लोहे के बिजली के खंबे लगे हुए हैं।

पास में बहुत सारे मकान बने हुए हैं मकान के पास में बड़े बड़े हरे पेड़ लगे हुए हैं एक रेलिंग बनी हुई है।

इसपे बज बेहट लिखा हुआ है स्वास्तिक का निशान बना हुआ है।

दुकान में तराजू रखा हुआ है दुकान के पास बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं जिसने पीले रंग की टी शर्ट पहन रखी है एक ने सफेद शर्ट पहन रखा है।

दूर खड़े हुए हैं उनके सब सर पे गोल कैप लगी हुई है।